हमें यहाँ पर बहुत सारी साइकिलें रखी हुई दिखाई दे रही है जोकि बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पे कुछ गाड़ी भी रखी हुई है बहुत ही सुन्दर लग रही है काले कलर की है उसमें कुछ काँच भी लगा हुआ है वो सिग्नल सिंग का --

बहोत सारे स्कूटर रखे हुए है जो कि देखने में काफी सूंदर है में दो टायर भी लगे हुए है काले कलर के है ऊपर में तार भी दिखाई दे रहे है निचे जीपें रखी हुई है सफ़ेद कलर की है इनमे कांच लगे हुए है बहुत सारे हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँ पर यहाँ रोड भी निकला हुआ दिखाई दे रहा है और वही रोड है इसमे बहुत सारी पट्टी लगी हुई है सफ़ेद कलर की है रोड काले कलर का बहुत ही सुन्दर लग रहा है और यहाँ पर हमे बहुत गाड़ी दिखाई दे रही है ज्यादा मात्रा में एक गाड़ी सफेद कलर की है उसमें टा--

यहाँ पर हमे बहुत सारा मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहोत सा सामने बाइक भी रखी हुई दिखाई दे रही है जो की बहोत अच्छी लग रही है।